और एक अ एक आदमी बैठ के गाना सुन रहा कम्बल टान के --

और वह चीज़े करते हैं थैंक यू ।

इंटरनल अच्छा है।